साफ सुथरा आसमान है आसमान के नीचे आपको नदी बेहेते हुए देख-देखने को मिल रही है बहुत प्यारा सीन बहुत अच्छा सीन है।

इसमे देखिए की एक नाव है जोकि पानी के ऊपर तेर रही है पानी के ऊपर आप देख सकते है नाव में कोई है नही बस खाली है।